पीछे भी काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

और बहोत बड़ी सी एक दुकान दिखाई दे रही है।

दोनों व्हाइट कलर की कार है दिन का समय है डिश भी दिखाई दे रही है।

जहां पे आपको पता है ये लेडी सूट मिलते हैं ठीक है।

देखो यहां पे काफी सारे सूट लगे हुए हैं क्रीम कलर का है पिंक कलर का है आगे की तरफ भी काफी सारे सूट दिखाई दे रहे हैं।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

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की नीले रंग की है।

और यहां बोर्ड लगा है एस_बी_आई का नीचे लिखा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग है लिखा हुआ है आर_के मेगा स्टोर --

इस फोटो में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक कटन दिखाई दे रहा है जो कि सफेद रंग का है। पीछे की तरफ सोफे रखे हुए है।

और यहां पे और भी काफी सारा सामान नजर आ रहा है।

इस फोटो में सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है और एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है बाला जी स्वीट्स --

फोटो में एक अं जो है पार्क दिखाई दे रहा है काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

एक लड़का दिखाई दे रहा है जो पीले रंग की--

दीवार पे भी सफेद रंग का पेंट है।

बाहर की तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और दिन का समय है।

इस फोटो में यहां पर सामने एक एल_इ_डी लगी हुई है।

स्विच बोर्ड लगे हुए हैं तीन फोटोस लगी हुई है दीवार पे--

सामने पोस्टर लगा है जिसपे लिखा है फिटनेस ।

साइड में एक पोस्टर और लिखा हुआ है जिस पे लिखा है थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मोबाइल नंबर दोल यहां पर लिखे हुए हैं।

इस फोटो में दीवार जो है वह सफेद और लाल रंग की है पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे हैप्पी दिवाली काफी सारे बच्चे हैं।

जो है यहां पे कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहां।

आस पास पौधे दिखाई दे रहे है दो चार गाड़ियां दिख रही है जो वाइट कलर की हैं।